ऊपर का हिस्सा सोने के रंग का है तथा मूर्तियों में हाथी तथा अन्य प्रकार के जानवर देखे जा--

रखे हे एक मेज पर रखे हुए है पीछे की तरफ दीवार सफेद तथा अलग रंग --

दर नहा रहा है तथा उसके नदी के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफेद रंग --

रॉयल एनफील्ड लाल अक्षरों से लिखा हुआ है तथा नीचे की तरफ कांच की दरवाजा नज़र--

एक बाइक साफ नजर आ सकती है जो की नीले तथा सफेद रंग की है जिस पर सफेद रंग की नंबर --

अजंता डेरी लिखा हुआ है जिसके बाहर मोटर साइकिल खड़े है तथा एक व्यक्ति पीले तथा काले रंग के कमीज पेहने हुए --

एक व्यक्ति सफेद रंग की तथा काले रंग की टोपी पेहने हुए बैठा है जिसने अपने चारों हाथों में जूते --

चार मुख वाला सिंह की मूर्ति नजर आ रही है जिसके साथ ही में पीछे की तरफ --

एक नदी साफ देखि जा सकती है तथा कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रहै हैं। पीछे की तरफ आसमान--

प्याज तथा गाजर रखे हुए हैं साथ ही में पानी की बोतल भी देखी जा सकती है तथा बाहर की तरफ भी--

और जगह में नदी का पानी भी साफ़ देखा जा सकता हैं जिसके बाहर लोहै के काले ग्रीस भी लगे हुए हैं।

सेल्फ पर रखा हुआ है जिसके साथ ही में नीचे का फर्श छिद्र --

कुंदन काले रंग के अक्षरों पीले रंग के बॉर्डर पर लिखा हुआ है जिसके साथ ही में शुभ राम लिखा हुआ है।

रंग भी नीला नज़र आ रहा है उसके साथ ही में नीचे की तरफ कुछ चीजे--

कुछ व्यक्ति चट्टानों के नीचे नजर आ रहे है चट्टानों के पत्थर काफी बड़े-बड़े हैं तथा बाहर की तरफ निकले हुए हैं एक व्यक्ति --

एक काले रंग के जूते साफ दिखाई दे रहै हैं व्यक्ति ने हाथ में सोने के रंग अंगूठी--

एक व्यक्ति काले रंग की कमीज तथा काले रंग की जींस पेहेने हुए एक पत्थर पर बैठा है तथा पीछे की तरफ तीन महिलाएँ द --

नज़र आ रही है जिसमें से एक ने संतरी दूसरे ने नील तथा लाल तथा तीसरी ने भी गुलाबी तथा नीले रंग के कपड़े--

पांच व्यक्ति बैठे हुए है जिन्होंने--

जिन्होंने हाथ में भाला तथा धनुष पड़ा हुआ है पीछे के ही तरफ--

खेल का मैदान नज़र आ रहा है जिसके साथ साथ ही लाइटिंग जो कि सफेद रंग की है नज़र --